और शोरूम के बाहर भी बुलेट खड़ा किया हुआ है।

स्टूडेंट लोग भी हैं।

बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

और एक नाव है जिस पे दो आदमी लोग बैठे हुए हैं।

और इस समंदर का पीछे पहाड़ भी दिख रहा है।

इमे जिम करने वाला सामान लगा हुआ है।

इस दृश्य में एक चट्टानों वाला पहाड़ का चित्र है।

यह आदमी हाफ पैंट और हाफ टी शर्ट पहेना हुआ नजर आ रहा है।

इस खेत मे बहुत सारा फसल लगा हुआ नजर आ रहा है।

एक मजदूर कुर्ता पहना हुआ है और एक शर्ट पहना हुआ है।

कार्टून भी रखा हुआ है।

ये पढ़ाई कर रहे हैं और टेबल पे बुक और वाटर बोतल रखा हुआ है।

इस दृश्य में एक बड़ा सा हॉल रूम का चित्र है।